यहाँ पर एक ए.टी.एम मशीन है।

इस ग्राउंड के किनारे एक सड़क है |

यहां पर एक हप्ता में एक डॉक्टर आते हैं। यह डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं।

यहाँ पर बड़े- बड़े पेड़ भी हैं।

इस तलाब का पानी से सिचाई भी किया जाता --

यहाँ जिम करने से शरीर फिट रहता --

इस पर काफी सारे फूल रखे गए हैं।

यह रेस्टोरेंट काफी बड़ा है | इस रेस्टोरेंट में काफी सारी कुर्सियां एवं टेबल लगाये गये हैं |

इस नदी के किनारे पर नाव खड़ी है |

यह बिल्डिंग तीन तल्ले की है।

यहाँ एक मैदान भी है। यहाँ हरी - हरी घास भी है।

यहाँ अधिकतर समान लोहे की है। यहाँ पर बहोत से आदमी जोम करते है। यहाँ पर तरह-तरह के जोम करने के समान रखे गये हैं।

यह बिल्डिंग काफी ऊँची - ऊँची भी है। यहाँ बड़े - बड़े पेड़ --